हुक दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ सामान लटका हुआ है|

और ऊपर से जमीन दिखाई दे रही है।

अंदर और वो बॉक्स के नीचे ताला लगा दिखाई दे रहा है।

और किताबे दिखाई दे रही है ।

कॉलम खड़े दिखाई दे रहे हैं और पीछे मिट्टी दिखाई दे रही है। आसमान दिखाई दे रहा है।

पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है।

क्या एक अ बिल एक घर बना दिखाई दे रहा है।

कमरा दिखाई दे रहा है जहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।